रेड कलर से लिखा हुआ है ब्लैक कलर से लिखा हुआ है।

और आसमान का कलर ब्लैक हो रखा है बादल छाए हुए हैं।

एक बच्चे ने ब्लैक कलर की हुडी पेहेन रखी है एक बच्चे ने --

ब्लैंकेट में है ब्लैंकेट का कलर ब्लू है कुछ पर्दे हैं जिनका कलर ---

और चेयर का कलर ब्लैक है और चेयर के गद्दे का कलर --

ग्रे है और काफी सारी लाइटिंग लगी हुई है पीछे एक---

और बहुत सारे तार उलझे हुए हैं और एक बिजली का खम्बा है।

मकान का दीवार का कलर ---

और ग्रीन कलर का फर्स्ट दिखाई दे रहा है।

यह एक रेस्टोरेंट जैसा प्रतीत हो रहा है इसमें दीवाल पे कैसीनो लिखा हुआ है।

इसका कलर वाइट है इसमें कांच के शीशे लगे हुए हैं।

तीन बच्चे फर्श पे बैठे हुए हैं।

गमला में पौधा लगा हुआ है।

और पौधे के पत्ते का कलर हरा है।

लाइब्रेरी में अलग-अलग कंपार्टमेंट बना हुआ है कंपार्टमेंट का कलर --

बस के आगे शीशा लगा हुआ है।

और दो कप चाय है रखा हुआ।

यह एक मकान है मकान के आगे रास्ता है।

और एक बिजली का खंबा है।

और पीछे टीन का मकान है बगल में खेत है खेत में कुछ पौधे लगे हुए हैं।

यह एक योगा क्लास है जिसमें चौदह लोग योगा कर रहा है और एक लोग योगा करवा रहे है।

वाइट कलर और ब्राउन कलर का है।

इस पार्क में सिर्फ एक लोग खड़े हैं।

प्रेरी में बोर्ड भी लगे हुए हैंचार्जर लगा हुआ है।

यह एक फल का दुकान है जिसमें अनेकों प्रकार के फल रखे हुए हैं संतरा रखा हुआ है सेब रखा हुआ है।

स्विमिंग पूल के पीछे बड़े-बड़े पौधे लगे हुए हैं।

और काफी सारे चेयर और टेबल रखे हुए हैं।

काफी सारी बिल्डिंग बनी हुई है बहुत सारे लोग भी है।

एक लेडीज साड़ी खरीद रही है और एक सेलर्स मैन है।

और आसमान भी है आसमान का कलर नीला है।

जिसमें काफी सारे पहाड़ हैं और हरे भरे घास हैं।

इसमें काफी बड़े-बड़े पेड़-पौधे हैं और नीचे लड़कड़ियां भी गिरी हुई है।

और पेड़ पौधे पत्तों का कलर हरा-हरा है।

यहां पे बहुत सारे पिकअप लगे हुए हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने-अपने काम में व्यस्त है।

और काफी सारे बैलूंस फूले हुए हैं।

बैलूंस कलर पिंक एंड वाइट है।

वाइट भी है और पत्तों का कलर हरा है।

बोल का कलर वाइट है बहुत सारी लाइटिंग लगे हुए हैं दो पंखे लगे हुए है।

जिसमें आलू है प्याज है।

यह एक पार्क है जिसमें बड़े-बड़े पौधे लगे हुए हैं छोटे-छोटे भी पौधे है।

और बिजली के खंभे भी लगे हुए है।

लाइब्रेरी के कंपार्टमेंट का कलर ब्राउन है।

पीछे एक फ्रिज रखा हुआ है जिसमें फैंटा रखा हुआ है।

और यह एक किराने का दुकान है जिसमें चॉकलेट है और काफी सारे--

फर्स का कलर वाइट है।

और दीवाल का कलर वाइट और ग्रीन है।

ये एक कपड़े की दुकान है।

जिसमें कार वॉश हो रहा है।

यह एक प्लेग्राउंड है जिसमें बहुत सारे खिलाड़ी--

एक खिलाड़ी ने रेड कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है ब्लू कलर का पैंट पहना हुआ है।

जिसमें एक नाव तैर रहा है और एक लोग नदी के किनारे बैठा हुआ है पत्थर पे--

जिसमें काफी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और बहुत सारे बैंक लगे हुए हैं।

और मैप भी लगा हुआ है।

और चेयर लगा हुआ है एक लाल कलर का फ्रिज रखा हुआ है।

और दीवाल है दीवाल का कलर वाइट है।

यह एक बिल्डिंग है जिसमें कुछ लोग खड़े हैं।

और पीछे पेड़-पौधे खड़े हैं।

पेड़ के पत्तों क कलर हरा है एक---

लोहे के छड़ लगे हुए हैं पाइप लगी हुई है वायरिंग की---

इसका कलर ग्रे है और नीचे धरती पर रखा हुआ है।

पंखों का कलर ब्राउन है और पीछे पेड़-पौधा लगा हुआ है और बांस भी दिखाई दे रहा है।

काफी मोटरसाइकिल भी खड़े हैं और कुछ चल रहे हैं।

यह एक पार्क है जिसमें काफी सारे पौधे लगे हुए हैं।

यह एक मंदिर का गेट है जिसमें ऊपर गणेश जी बैठे हुए हैं।

और यहां पे स्कूल है हरे हरे पत्ते लगे हुए हैं।

इसमें कई प्रकार की मशीनें रखी हुई हैं।

मशीन का कलर ब्लैक है और एक मशीन का कलर ग्रे है।

और ब्लू कलर की एक शर्ट है और कुछ ली लिखा हुआ है।

जिसमें अलग-अलग कंपार्टमेंट बने हुए है।

और इसमें लाइब्रेरी में एक फोटो लगी हुई है।